ये मुढे चेयर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आएगा मुढे क्या होते है लेकिन लकड़ी की बांस की पट्टियों से बना हुआ --

यहाँ पर देखिये एक बहुत ही सुंदर पुल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रात हो गयी है और समझ में नही आ रहा ये पुल कहा हो सकता है और एक खंभा भी लगा हुवा है।

ओर ये कोई हॉस्टल है या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई इमारत हॉस्पिटल वगरह भी हो सकती है और ये इमारत किस चीज़ के काम आती होंगी।

सामने एक बोहोत ही सुंदर सफ़ेद रंग की इमारत दिख रही है इस इमारत के तीन दरवाजे हैं और तीनो दरवाजों पर ये कितनी सुंदर नक्काशी की गयी है।

यहाँ पर भी देखिए एक खाली मैदान दिख रहा है और ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ पर किसी के जुत्ते भी रखे हुए हैं।

और ये नाव पानी के अन्दर दिखाई दे रही है और बहोत सारे दुकानें जैसे रेड़ी पटरी वाली दुकानें दिखाई दे रही हैं। सामने एक मन --

तो आप मुझे बताइए ये बिल्डिंग किस चीज के लिए अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खेल से रिलेटेड कोई बिल्डिंग हो तो यहाँ पर ब --

गार्डेन दिख रहा है। इस इस पार्क के अंदर बहुत ज्यादा भरी भरी घासे है उगी हुई हैं। सामने एक इमारत भी दिख रही हैं।